और कांच हमें गोल लगे हुए दीवाल पर दिखाई दे रहे हैं।

और जिसके बाहर हमें लोग दिखाई दे रहें आइसक्रीम लिए हुए हाथ में एक महिला--

और हमें ये नीचे बड़ी सी दुकान दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारा--

एक गैस सिलेंडर और के पास एक आदमी खड़ा है।

लोग चल फिर रहे हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं।

पास में ही उसके हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं।

और एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर नगर पंचायत--

एक नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

हमें दो रेलिंग लगी हुई नजर आ रही है और फर्श दिखाई दे रहा है।

और एक गाड़ी हमें सफेद खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

कुर्सियां लगी हुई हैं ब्राउन रंग की और टेबल लगे हुए नजर आ रहे हैं।

कुर्सियां डली हुई हमें लोहे की ये दिखाई दे रही--

इस तस्वीर के अंदर हमें दिखाई दे रहा है एक--

दया श्री बॉयज हॉस्टल का पोस्टर लगा हुआ है।

हमें आसमान में अ अ लाल रंग का सूरज निक अ दिखाई दे रहा है पीला-पीला।

दूर हमें शटर दो उठे हुए दिखाई दे रहे है।

एक ऊपर पंखा और लाइट भी जलती हुई नजर आ रही है।

एक बड़ी सी बॉल हमें नजर आ रही है बनी हुई।

और ये हमें बड़ा तालाब नजर आ रहा है जिसके अंदर नाव चल रही हैं।

एक स्टाइल टेलर का हमें काउंटर सफेद रंग नजर आ रहा है।

एक छोटी बच्चा हमें दिखाई दे रहा है गुलाबी रंग का इसने पहना हुआ है।

अ सबसे ऊपर और अ पोस्टर लगे हैं मूवी के।

तस्वीर के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं आदमी खड़े हुए हैं।

और एक हमें बाउंड्री वॉल जो पेंट करी हुई नजर आ रही है रंगबिरंगी--